इस चित्र में हमे स्टेज पर रखी दूल्हा दुल्हन की खुर्सि दिखाए दे रही है जिसकी नकाशी बहोत सुंदर है। उस पे मोर का काम बना हुआ है।

इस चित्र में हमें चर्च के अन्दर का दृश्य दिखाई दे रहा है जहा बहूत से लोग प्रार्थना कर रहे है बड़ी बड़ी लाइटे लगी हुयी है।

उनके हात में एक पानी का मगा भी है।

इस चित्र में हमें व्ययामशाला के अंदर का दृश्य दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक व्यक्ति --

जो की फोटो निकलवाता नजर आता है पुरुष ने कैप पेहेन रखी है महिला ने बहुत सुंदर कपडे पेहेन रखे है।